यह तो कहीं कुछ किसी चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है।

लोगों की इतनी भीड़ लगी है जमा है लोग खड़े हैं आना जाना ऐसा चालू हैं।

हमारी शादी है दोस्त की शादी है सज-धज के वाह क्या बात है।

लोग करके लोग अच्छे सेबच्चे भी एंजॉय कर पाएंगे।